और यहाँ एक बिल्डिंग भी बनी हुई है पास में कुछ छोटे घर बने हुए हैं इसके आस-पास और ये टॉवर काफी पुराना है और काफी बड़ा है।

यहाँ पर एक ट्रे रखी हुई है उसके ऊपर चार चिकन के पीस रखे हुई है और ये चारों लगे सीप हेंगे और बीच में एक कटोरी--